समुंद्र है और समुंद्र के किनारे नाव लगाने का जगह रखा है जहाँ पे नाव आ के रुकती है जिसे हम फ्लैट वन बोट कहते है यहाँ पर सारे नाव आके रुक के किनारे रहते है।

और मिस्त्री और लेबर मिल के इसको प्लास्टर कर रहा है और बगल का भी मिट्टी उठा के किनारे कर रहा है बहुत ही अच्छा दृश्य है ये।

यह इलाहाबाद बैंक जहानाबाद साखा का है।

अगर किन्ही को पैसे की कमी हो गई हो तो वे ए.टी.एम. से तुरन्त पैसा निकाल के और टिकट कटा सकते हैं यहाँ से आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं बाई रेलवे ।